यह मुर्गा है इसको अंग्रेजी में हेन बोलते है। इसके दो पैर होते है और यह ऊंच काफी ऊंचाई पर नहीं उड़ता। यह सुबह उठकर सभी को उठाता है और यह बच्चे अंडे के रूप में देता है।

यह सारनाथ के चिड़ियाघर का एक टिकट घर है यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को टिकट लेके अंदर जाना होता है|

चीज आदि चीजों की आवश्यकता पड़ती है। यह बच्चों के लिए मनपसंद फूड होता है।